तारे भी जा रही है केबल की है शायद तारे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं वहां पर ब्राउन कलर की मिट्टी है।

बिल्डिंग्स दिख रहे हैं टॉवर भी लगे हुए हैं।

कुछ लोग भी चलते हुए दिख रहे हैं यहां पर।

इस फोटो में एक भैया सेल्फी ले रहे हैं।

कुछ सीमेंट की बोरियां लेकर अंदर की तरफ जा रहे हैं।

माउस है कीबोर्ड है साथ में एक बोर्ड रखा है जिसमें ए टू जेड लैपटॉप सॉल्यूशन लिखा है।

ऊपर शेल्फ में कीबोर्ड माउस --

रेड कलर की सीट पे बैठाया गया है।

पर्सन बैटिंग कर रहा हैं तो दूसरी फील्डिंग --

यहां से एंट्रेंस है बैंक की और नीचे कुछ बेसमेंट में भी कुछ ग्रा शटर बंद है।

ये जिम का फोटोग्राफ लग रहा है। जहां पर काफी बड़ी अच्छी सी सुंदर सी लाइट दिख रही है। सामने मिरर है।

गार्ड्स भी खड़े हैं साथ में कुछ अ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं।